इस डॉ ये डॉक्टर कुछ दवाई लिख रहे हैं।

फोटो में एक बड़ा सा फर्श के ऊपर लकड़ी की मेज रखी हुई है।

ये स्कूटी के आगे मैदान है मैदान के तीनों चकोर दिवाल है।

मंदिर के बहरे बहु थोड़ा बहुत घास है।

यह एक फोटो है इस फोटो में चारों साइड बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

आदमी के आगे एक झंडा टाइप का कुछ लगा हुआ है एक आदमी झंडे के पास खड़ा है।

आदमी खेल रहे हैं इस फोटो में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं यह एक बहुत बड़ा मैदान है।

लोहे के पाइपे लाइट की चमक मार रही है अंदर भी टेंट लगा है।

उस पे लिखा है किरण हेल्थ केयर सेंटर बोर्ड के आगे एक आदमी खड़ा है आदमी के आगे बोर्ड लगा है।

दीवार पे हरे रंग का पेंट हो रखा है।

दो लड़के है और सड़क क्लोज कर रहे है।